खुच झाड़ हरे हरे दिख रहे है और हल्का आसमान दिख रहा है और सफ़ेद कलर का पट्टा रोड --

पथरो का दिख रहा है उसमें कुछ लाल समाहवर है और लाल ओढ़नी चम चमकी वाली ओढ़नी डली है कुछ नारियल जैसे टुकड़े पड़ा हुआ है और हरा हरा घास बाजु में दिख --

एक डांस क्लास टाइप की दिख रही हैजीसमें कुछ गर्ल्स हैंकुछ बोयस है इन्होंने ब्लू शर्ट ब्लू टी शिर्ट फेहनी हुई है।